इस तस्वीर में मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ शोपीस दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ खेत दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक टंकी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे दो दुकान दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक ट्रक दिखाई दे रहा है।